यहां मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे कुछ कमोड दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे एक पुरुष दिखाई--